नीचे पत्थर बिछे हुए है सफेद कलर के पत्थरों के अगल बगल मै देख पा रहा हूं।

सात संख्या में लोग खड़े हुए जिसमें दो औरत नजर आ रही है मुझे और बाकि आदमी नजर आ रहा और बुजुर्ग आदमी भी नजर आ रहा मुझे चश्मा पहन रखा है।

अ दो चेयर नजर आ रही चेयर का कलर मैं देख पा रहा हूं एक क्रीम कलर है एक का ब्लैक कलर है और मैं देख पा रहा हूं यहां पर लाइटें भी लगी ट्यूबलाइट भी लगी हुई है ट्यूबलाइट का कलर मै देख पा रहा हूं।